और ऊपर की साइड में सिने पॉलिश नाम करके लिखा हुआ है।

जहां पे दो चार गो आदमी बैठा हुआ है चेयर टेबल पे।

से और के_एफ_सी लिखा हुआ भी दिखाई पड़ रहा है और लाइट स्टैंप भी है यहां पे --

इस तस्वीर में हमें एक पार्क दिखाई पड़ रही है जो कि बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा सामान रखा हुआ है जैसे स्लीपर है।

और भी बहुत कुछ है और छोटा छोटा पेड़ भी लगाया हुआ है बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा एकदम हरा भरा पेड़ भी यहां पे मौजूद है।